ये मार्केट है और ई सामने तो बाइक में एक आदमी दिखाई दे रहे है और बहुत सारे टोटो ऑटो ठेले और बहुत सारे लोग दिखाई --

एक शॉप है ड्राइ क्लियर का--